बाउंड्री बनी गई है पहाड़ी इलाका है बड़े बड़े--

यहां शादी हो रही है यहां पास कुर्सियां सजी हुई है।

ये आनंदम टी_वी_एस के पास का है।

यहां एक घड़ी भी लगी हुई है दीवाल की घड़ी भगवान रखे हुए हैं।

बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी दिख रहे हैं और एक बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां पास कई सारे लोग खड़े हुए हैं।